जो वाइट कलर की प्लेट है जो की ग्रीन कलर का पत्थर रखा हुआ है एक डोसा है जो की अच्छा लग रहा है देखने में और चटनी भी एक नंबर है जो कि दो गिलास रखे हुए है।